वे मेज और कुर्सीया भी पड़ी है मेज का कलर व्हाइट और रेड नीचे से लगा हुआ है और कुर्सियां रेड कलर की है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है जिसका कलर --

और सारी सामग्री ग्रीन और ब्लू कलर की दिख रही है बहुत सारे हैं।

निस्कल टॉप नज़र दिखाई दे रहॆ है और एक काउंटर भी दिख रहा है जिसका कलर ब्राउन कलर का हैं ।

ब्लैक कलर का एक औरत है जो बुर्का पहने हुए जिसका कलर ब्लैक कलर का है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक आदमी पेट्रोल भरता हुआ दिख--

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जोकि व्हाइट कलर का है और एक झूला भी दिखाई दे रहा हैं ।

जैसा की मई देख पा रही हूँ यहाँ पे एक लड़की कत्थक करती हुई नज़र आ रही हैं जो की ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई हैं और बहुत सारे जेवर भी पहने हुए हैं।